बिल्डिंग के अगल-बगल छोटे छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है बिल्डिंग के बाहर कई सारी बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

किसी स्कूल के अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ पर तीन-चार बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है जिनमें से एक लंबी हैऔर दो छोटी-छोटी है।

पर एक नदी दिखाई दे रही जोकि काफी दूर तक नज़र आ रही और काफी ज्यादा मात्र में फैली हुई है नदी में काफी ज्यादा पानी भी नज़र आ रहा नदी काफी गहरी दिखाई दे रही है नदी--

स्कूल के ऊपर वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ब्लू कलर से स्कूल का नाम लिखा गया है स्कूल में नीचे वाइट ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है जोकि दो वाइट खम्बा सो लगाया गया है।

यहाँ पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जिसके बिच में एक टीला बना हुआ जहाँ पे काफी ऊँचे ऊँचे पेड़ लगे दिखाई दे रहे है।

दुकान दिखाई दे रही है जिसके बाहरी हिस्से में एक ब्लैक कलर का तख्ता है जिसके ऊपर कुछ कॉपियां रखी हुई नज़र आ रही है।

पर एक बड़ी सी गाड़ी की कंपनी बनी हुई है जिसके ऊपर रेड कलर के बोर्ड में बड़े-बड़े अक्षरों में इसका नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।